छोटा रेलवे स्टेशन है बट बहुत नाम है जामतारा का और यहां काफी सारी एक्सप्रेस लोकल ट्रेनस का ठहराव है।

कोई फॉल है झील जिससे पानी गिर रहा है और लड़का बैठ के उस पर नाहा रहा है तैर रहा है या फिर जो बोले इंजॉय --

सेल करने के लिए बड़ी-बड़ी मछलियों को और बहोत फ़्रेश बहोत बेहतरीन बहोत खूबसूरत लग रही है मछलियां।